कॉलेज है हॉस्टल है नरियाल का गाछ है रोड है आदमी है पैड़ है।

गाड़ी है चक्का है आदमी है।

म गाड़ी है पहिया है लिखा हुआ है शीश का है गेट खिड़की है।

कण है बोर्ड है गेट है।

दीवाल है गाछ है नारियल का गाछ है आम का गाछ है।

घर है कपड़ा है गाछ है पहाड़ है।